यह देखिए ये एक सरकने की वो है जो कि पार्कों में और अक्सर कई जगहे पर लगी होती है पूलों में भी लगाई जाती है की इससे खिसक के पानी में गिरने में बहुत ही मजा और अच्छा लगता है।

ये पास में छोटे मोटे बिल्डर बने हुए है जो की दिखने में अच्छे और सुंदर लग रहे हैं हैं देखिएगा कितना अमेज़िंग लग रहा हैं।

केले कच्चे केले इसके कई प्रकार के सेब वागेरा --

यह चित्र यह दर्शाता है कि यह आदमी को देखिए यह बॉयज कपड़ों की दुकान है यह लड़की के कपड़े की दुकान है | यहाँ पर सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं | यह देखिये अम्बानी --

यह भी देखिए यह है खेल-खिलौने की दुकान है। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी और चिड़िया वगैरा जो की नकली बनाए जा रहे हैं। देखने मे बहुत ही सुंदर लगती है देखिए --